बहोत बड़ा पार्क है।

यहां पर बहोत सारे पेड़--

इस फोटो में हमें दिख रहा है।

पेड़ जिसमें बहोत सारे फूल लगे--

इस फोटो में हमें नज़र आ रहा है।

बहुत सारे फ्लार्स रखे हैं ये एक फूलों--